दिखाया गया है जिसे होस्टेजिंग जैसा है।

ये सब बड़ा बड़ा पेड़ भी दिख के हैं।

डिब्बा को दिखा के है और ये इंस्ट्रूमेंट

करके है और आगे में दो तीन दुकान रखे हैं और इंसान भी दिखा के है और थैला ले के भी

इस घर का ग्राउंड में ये लाइट सब लाइट का पोस्ट --

दिखा के हु दुकान के अंदर में बहुत सारा सामान दिखा--

हमें दो ठो बिल्डिंग को दिखाया गया है जोकि बड़ा है।

तीन ठो फ्लावर है नीचे का ब बगीचा में।

गैरेज को दिखाया गया हैं गाड़ी गैरेज का रूम बहोत बड़ा है।

में एक ढाबा को दिखाया गया है जिसके ऊपर--

वी_ई_पी ढाबा लिख के है उसके नीचे में फ्लैग सब से--

पीछे वाला रूम में शीशा से जो--

तरह तरह का फूल कलर्स लगाके है और उसका कुर्सी का--

वे दिखाई नही दे रहे और अन्दर में दो तीन आदमी लोग खड़ा करके--

साइड बॉक्स में ऊपर में टी शर्ट और जैकेट नीचे में टी शर्ट और हॉफ पैंट रखे है।

ये आदमी लोग मास्क पहन के है और ऑरेंज कलर का कपड़ा पहन के है।

एक बिल बिल्डिंग को दिखाके है दो बिल्डिंग है राइट साइड लेफ्ट साइड राइट साइड का--

दिखा के है पानी पाइप ।

यहाँ से लगा के है मे और फिर घर का कलर जो है।

हमें एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेंनिंग इंस्टीट्यूट ए टी आई लिख के घर है जिसमें--

स्ट्रक्चर रूम को दिखा कर है ईंटों से वॉल बनाकर है।

बाहर के लिए इधर से लगा रहा है लगाके है।

बाइसाइकिल का शॉप जैसा दिख रहे है जिसमे कस्टमर्स जो लोग भी है दो तीन ठो हैं और बाइसाइकिल --

ये रूम का दिन और एक रूम दिखाके है जिसका दरवाजा--

सिस्टम भी दिखा के है लाइट साइट पूरा ऑन करके--

एक टावर दिखा के है जिसमे--

इसमें बहुत सारा सामान है है।

को भी दिखाया गया है।

चाय बगान दिखा के है इसमें चाय बगान का बीच में एक अलेग रस्ता भी है।

रस्सी से बांध के है रस्सी का कलर ग्रीन कलर --

उनका एक कॉटन कैंडी लेके दुकान दौरी है।

और भगवान का मूर्ति रखा है इतने सारे और फिर नीचे में बहुत सारा आदमी है उनका--

ये किचन दिखा के हैं जिसमें जीसस का फोटो रख के भी है आदमी लोग है

जैसा है उसका अंदर में बहोत सारा--

इसके सामने में दो ठो टाइगर का स्टेच्यू है फ्लैग सब लगा के है।

और ढेर सारे दिखा के हैं।

अलग अलग कलर का है कोई व्हाइट कोई ब्लैक --